ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का आगमा है आगमय है और यहाँ जो है बसें और वैनस खड़ी हुई हैं।

यह जो है यहा किसी चीज का फंक्शन हो रहा है तो यहा हमको स्टेज दिख रहा है।

वह जो गेट है वह ब्राउन ब्राउन कलर का है| साइड पे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

गोल्डन कलर मैं | और यहाँ जो है डेकोरेशन जो हैं रेड और ग्रीन कलर का डेकोरेशन हैं।

यह जो है नेहरू भवन है| बास के यहाँ अ कपड़े का जो हैं टेंट बना हुआ हैं तम्बू --

एक बड़ा सारा यह जो एक बड़ा सारा पत्थर लगा हुआ है।

और इसके साइड में जो है बड़ा सारा पेड़ बना हुआ है ।

और बहुत रेड रेड जैसी हो रही है| वाइट कलर की बिल्डिंग से ऊपर आसमान आसमान दिख रहा है| और ब्लू कलर की शेड है ।

यह जो है नगर निगम लिखा हुआ है ब्लू कलर के बोर्ड पर और-र-र बाहर के साइड दो हज़ार बायिश जो है --